दो ड्रम नजर आ रहे हैं ड्रम पर खड़ा एक आदमी नजर आ रहा है।

सामने लगी टी_वी नजर आ रही है।

इनमें लगी एक घंटी नजर आ रही है।

वो आदमी खड़े नजर आ रहे हैं।

ये एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

मंदिर पर छोटा कलश रखा हुआ नजर आ रहा है।

पान के पत्ते नजर आ रहे है कुछ लोग नजर आ रहे है।

बलून से की हुई डेकोरेशन नजर आ रही है।

मॉल में कई लोग नजर आ रहे हैं बिलिंग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में कोनेश्वर मंदिर नजर आ रहा है।

कई गाड़ियां नजर आ रही है।

और ये एक टी_वी लगी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में एक कॉलेज नजर आ रहा है कॉलेज का मैदान नजर आ रहा है।

इमेज में एक स्टेज बना हुआ नजर आ रहा है।

एक आदमी स्टेज पर कुर्सी पर बैठा हुआ है।

पेट्रोल पंप नजर आ रहा है।

बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।